इस पिक्चर मे जो है एक लड़का खड़ा हुआ है चश्मा लगा के और ग्रीन जैकिट और पीछे जो है लोहे के पिलर्स जैसा दिख रहे है साइड मे जो है काफी सारी बोरिया रखी हुई है ऊपर काला-काला --